और प्रेस करने का कार्य करता है।

आनंद लेता हुआ दिख रहा है एक व्यक्ति जो पानी के बीचो बीच एक लंबे --

यह एक टाइल्स की दुकान है जोकि दिखने में काफी आकर्षक लग रही है।

बढ़िया से रुदाई की गई है।

यह किसी समारोह व्ये या किसी सादी --

इसने अपनी शर्ट सफेद कलर की पहनी हुई है।

यह तस्वीर वन इंडिया फैमिली मार्ट की है।

कपड़े आदि पहनने वाली चीज मिल सकते हैं।

फूड रिसेप्शन है यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन इत्यादि --

जिसमें काफी लोग मछली को काट रहे है और कुछ लोग मछली --

अ लड़के ने ब्लैक कलर की बंडी तथा पैंट पहनी हुई है।

गॉड इस्ह इसामस काई तस्वीर देखने को मिल रही है।